देख सकते हैं यहाँ पे एक परात में जलेबी दिखाई दे रही हैं। ये जलेबी देखने में भी बोहोत अच्छी हैं और खाने में भी बोहोत स्वादिष्ट होती हैं। ये एक स्टील की परात में रखी हुई हैं।

कि आप देख सकते हैं हमें गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं। ये काफी सारे गुलाब के फूल हैं और इनमें बोहोत सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई हैं।

से कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सुनसान जंगल है। यहाँ पर चार पांच जने जा रहे हैं।

यह एक क्रिकेट ग्राउन्ड है। यहां पर एक लड़की क्रिकेटिंग कर रही है और एक पीछे कीपिंग । जैसे कि आप देख सकते हैं कीपिंग करने के लिए लड़की जमीन पर बैठी हुई है।